C में कंस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे Constructorsकंस्ट्रक्टर्स कंस्ट्रक्टर्स के प्रकार डिस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स हम कुछ उदाहरणों की मदद से यह करेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन 1110 g कंपाइलर वर्जन 461 अब कंस्ट्रक्टर्स के परिचय के साथ शुरू करते हैं
कंस्ट्रक्टर एक मेम्बर फंक्शन है
इसका नाम क्लास नामे के जैसा ही है
कंस्ट्रक्टर्स वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर सकते
जब ऑब्जेक्ट बनता है तो यह अपने आप कॉल होता है
कंस्ट्रक्टर्स के प्रकार पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कॉपी कंस्ट्रक्टर्स और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स अब डिस्ट्रक्टर्स पर जाते हैं
डिस्ट्रक्टर्स मेमरी को डीएलोकेट करने में प्रयोग होते हैं
वे कॉल होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट ख़त्म होता है
एक डिस्ट्रक्टर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता और न ही कोई रिटर्न टाइप्स रखता है
अब कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स पर एक उदाहरण देखते हैं मैंने एडिटर पर पहले ही एक कोड टाइप कर लिया है मैं इसे खोलूंगी
ध्यान दें कि हमारा फाइलनेम कॉन्स हाइफेन डेस्ट डॉट सीपीप है
इस प्रोग्राम में हम कंस्ट्रक्टर्स प्रयोग करके दो नंबर्स का एडिशन प्रदर्शित करेंगे
मैं अभी कोड समझाउंगी
यह आईओस्ट्रीम हमारी हेडर फाइल है
यहाँ हमने एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग किया
फिर हमारे पास एडिशन क्लास है
आ और ब इंटीजर वेरिएबल्स हैं
ये क्लास एडिशन के प्राइवेट मेम्बर्स हैं
यहाँ हमारे पास पब्लिक स्पेसिफायर है
फिर हमारे पास कन्स्ट्रक्टर एडिशन है
कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो क्लास का है
यहाँ मैंने दो आर्ग्यूमेंट्स पास किये
अब हमने एक डिस्ट्रक्टर परिभाषित किया
इसके लिए हमने टिल्डे चिन्ह के आगे डिस्ट्रक्टर नेम प्रयोग किया
यह पब्लिक फंक्शन ऐड है
यह आ और ब का सम रिटर्न करता है
यहाँ हम स्कोप रेज़ोल्यूशन ऑपरेटर प्रयोग करके कन्सट्रक्टर एक्सेस करते हैं
आ और ब प्राइवेट मेम्बर्स हैं
प्राइवेट मेम्बर्स को एक्सेस करने के लिए हम एक्स और य प्रयोग करते हैं
फिर हम डिस्ट्रक्टर एक्सेस करते हैं
इसमें हम मेमोरी डीलोकेशन प्रिंट करते हैं
यह हमारा मैन फंक्शन है
यहाँ हम एडिशन क्लास का ऑब्जेक्ट ओबीजे बनाते हैं
फिर हम दो आर्ग्यूमेंट्स 3 और 4 पास करते हैं
3 एक्स में संचित होगा और 4 य में संचित होगा
इसका मतलब आ की वैल्यू 3 और ब की वैल्यू 4 है
कंस्ट्रक्टर जो आर्ग्यूमेंट्स रखता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कहलाता है
अतः यह पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है
यहाँ हम ऑब्जेक्ट ओबीजे प्रयोग करके फंक्शन एड कॉल करते हैं
और हम सम प्रिंट करते हैं
यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अपने कीबोर्ड पर एकसाथ Ctrl Alt और ट कीज़ दबाकर टर्मिनल विंडो खोलें
कम्पाइल करने के लिए टाइप करें g स्पेस कॉन्स हाइफेन डेस्ट डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस कॉन्स एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश कॉन्स एंटर दबाएं
आउटपुट इस प्रकार प्रदर्शित होता है सुम इस 7 और मेमोरी डीलोकेशन अब डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स पर एक उदाहरण देखते हैं
अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं
मैंने पहले ही कोड टाइप कर लिया है
ध्यान दें हमारा फाइलनेम डिफॉल्ट डॉट सीपीप है
अगर कंस्ट्रक्टर क्लास में घोषित नहीं हुआ है तो कंपाइलर क्लास के लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लेता है
अब मैं कोड समझाती हूँ
यह आईओस्ट्रीम हमारी हैडर फाइल है
यहाँ हमने एसटीडी नेमस्पेस प्रयोग किया
फिर हमारे पास क्लास सबट्रैक्शन है
फिर हमने पब्लिक में आ और ब घोषित किया है
यहाँ हमारे पास सुब फंक्शन है
हमने दो आर्ग्यूमेंट्स इंट आ और इंट ब पास किये
यह दो नंबर्स आ और ब का सबट्रैक्शन रिटर्न करता है
यह डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है
यहाँ हम स्कोप रिजोल्यूशन आपरेटर प्रयोग करके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करते हैं
यह हमारा मैन फंक्शन है
इसमें हमने वेरिएबल एक्स परिभाषित किया
यहाँ हम क्लास सबट्रैक्शन का एक ऑब्जेक्ट एस बनाते हैं
फिर हम ऑब्जेक्ट एस प्रयोग करके फंक्शन सुब कॉल करते हैं
और दो आर्ग्यूमेंट्स 8 और 4 पास करते हैं
फिर परिणाम वेरिएबल एक्स में संचित होता है
और यहाँ हम डिफरेंस प्रिंट करते हैं
यह हमारा रिटर्न स्टेटमेंट है
अब प्रोग्राम निष्पादित करते हैं
अपने टर्मिनल पर वापस आते हैं
अब कम्पाइल करते हैं टाइप करें g स्पेस डिफॉल्ट डॉट सीपीप स्पेस हाइफेन ओ स्पेस डेफ एंटर दबाएं
टाइप करें डॉट स्लैश डेफ एंटर दबाएं
आउटपुट इस प्रकार रिटर्न होता है डिफरेंस इस 4 अपने प्रोग्राम पर वापस आते हैं
यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स पास किये हैं
और हमारे पिछले उदाहरण में हमने ऑब्जेक्ट में आर्ग्यूमेंट्स पास किये
और यहाँ ऑब्जेक्ट्स प्रयोग करके हमने आर्ग्यूमेंट्स पास किये
अब अपनी स्लाइड्स पर वापस आते हैं
सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कंस्ट्रक्टर्स उदाहरण एडिशन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर उदाहरण एडिशन ओबीजे 3 4 डिस्ट्रक्टर्स उदाहरण Addition डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उदाहरण सबट्रैक्शन नियत कार्य में डिविजन नामक क्लास बनायें
उस क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर बनायें
और एक फंक्शन डिवाइड बनायें जो दो दिए नंबर्स को डिवाइड करे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
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालोँ को प्रमाणपत्र देते हैं
अधिक जानकारी कर लिए कृपया contactspoken tutorialorg को लिखें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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद